यहाँ कुछ डॉक्टर दवाई लिख रहे है।

सभी मरीज को दवा दे रहें हैं सामने बहुत सारे लाल पीला और नारंगी रंग के डब्बे रखे हुए हैं दवा के।

इ लड़की को एक पुरस्कार एक व्यक्ति ब्लू रंग के शर्ट पहने हुए दे रहे हैं और बहुत सारे व्यक्ति लोग खड़े हैं।

ऑटो खड़े हैं और कुछ लड़के व्यक्तियाँ ऑटो से चढ़ रहे हैं तो कुछ बैठे हुए हैं।

कुर्सी पे बैठ के एक दूसरे से बता कर रहें हैं और पेपर पढ़ रहें हैं ठंड का मौसम है सभी ने स्वेटर पहन रखा है।

और अगल-बगल उनके नारियल का पेड़ --

और उसके बगल में एक पोस्टर लगा हुआ है |

यहाँ बोहोत सारे कप रखे गए हैं और बोहोत सारे ट्रे हैं प्लेट हैं बड़ा-बड़ा हरिया है।